जिसका उ दरवाजा उ मतलब गे खिड़की खुला हुआ है।

यह एक पहाड़ जैसा है पहाड़ के अन्दर लोगो का भीड़ लगा हुआ है --

क-- स्कूल हैं स्कुल के सामने आ-- सभी बच्चे अपने - अपने आ पंक्ति में खड़ा होकर प्रार्थना कर रहे हैं।

और सामने एक तिरंगा का झंडा है। सभी ड्रेस में है उजला - उजला में औररर उसका दृश्य बहुत ही अच्छा है।

और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़े हुए जो जूता पहने हुए है जो जैकेट पहने हुए है टोपी पहने हुए है और ये रात का नजारा है। इसका दृश बहुत ही--

यह एक मार्केट है इस मार्केट मे हां-हां बहुत से सामान बिक रहा है इसको हम लोग गुदरी मतलब कह सकते है।